ये एक भारत-नाट्यम का सीन है यहां पर चार लड़की--

और कुछ काम कर रहे हैं इसमें पंखा भी है और लाइट भी जल रहा --

लगा हुआ है और ए.टी.एम. में कोई आदमी नहीं है खाली है।

पत्थर पर एक लड़का जा रहा है हाथ में झोला लेकर और उसके --